एक औरत बैठी हुई है चेयर है उनके हाथ में वो लोग कुछ दे रहे है निचे जमीन पे है और सामने कुछ अ ड्रॉ बनी हुई है।

सामने कए लोग हैं रिक्शे है कई-सा तीन-चार रिक्शे है एक-ओ-क्या कहते हैरेड़ी लगी हुई है अम-अमरुद की।

और कई सारे बैलून्स है और बहुत सारे लोग है पीछे भी कई सजावटे है सामने अअ कुछ येलो कलर का ल --

यहाँ पे तीन लड़के फोटो खिचवा रहे हैं एक लड़का फोटो खींच रहा है सामने एक घर जैसा है जहाँ पे प्लस का निशान लगा वाइट घर है।

एक आदमी है जिसने सर पे स्कार्फ़ बांधा हुआ है और निचे जमीन में कुछ बिछाया हुआ है और उसमे मछलियां है।

और कूड़ा पड़ा हुआ है और कुछ डब्बे जैसा है और दो-तीन आदमी वहां पे दिख रहे है और उसके बगल में भी मछली का पूरा वो बिछा हुआ है और उसने --

पाइप है और ड्रम्स है दो यहाँ पे पूरा घर बन रहा है और सीढ़ियाँ है बोहत बहु सारी मिट्टी है।